कई सारी बडी-बडी इमारतें छन कई सारे मकान छन सामने मजी बिजली का एको टावर दिखनो एक मजी कई सारा हरया-भरया ढाला भी छन।

यख मा जी कुछ कपड़ा भी छन लटकण लग्यां एंच फण दिखेण लग्यां यख मा कई सारा लोग छिन यख मा जी एक आदमी का हाथ मा पाणी को पाइपा यख मा कई सारा पाणी की बाल्टी छिन दिखेणी डोंगा भी छिन दिखेणा लग्यां खम्बा यफून लग्युं लाइटिंग पिछाड़ी पर दिखेणी लगीं।

एक माछा वाला कि रेडी लगाईं एक आदमी छा बैठ्युं यु माछा छा बेचण लग्युं यख मा जी कुछ तराजू छा रख्युं यखम बाल्टी भी छा रखीं पिछाड़ी फणा कुछ लोग भी छन दिखेण लग्यां फंडे मा जी एक और आदमी की माछा वाला की दुकान लगाईं।

यख मा कई सारा लोग भी छिन यख मा जी एक पिल्लर कू डालू छ रख्युं डालू भीतर कई सारा माछा छन यख मा जी एक तराजू भी छ रख्युं।

यखमा जी कोई थर्मोकोल की पेट्टिन दिखेण लगीं यखमा जी कई सारा लोग भी छन यखमा जी एक बाल्टी भी छ दिखेणी साईकल दिखेणी पिछाड़ी मा जी बाल्टी करन रखी पिछाड़ी मा जी एक ट्रक का दिखेण लग्यूं पिछाड़िम कुछ टीन कर छप्परन दिखेण लग्यां बिजली का खम्बान बिजली का तार पिछाड़ी फणा।